बढ़िया इमारत है पत्रों से बनी हुई खतरों से या किसी भी--

और नीचे बड़े-बड़े पत्थर है कड़ियां है लकडिया है सुख झाड़ है कलर कलर के झाड़ है पहले उगे हुए हैं|